लाइब्रेरी वो उनका व्यवस्था रहता है। टेबल चेयर दे देते हैं। लाइट फ्री वाई वाईफाई सुविधा दी जाती है। दो घंटे चार घंटे के लिए कुछ अपना चर्जिस लेते हैं।

इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है ये सिनेमा हॉल के अंदर की फोटो है। जो मूवी लगी है जंगल जंगल मूवी का अड़वरटाईज़मेंट है।